यहां पर रेड कलर का नीचे कार्पेट बिछा हुआ है ऊपर कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं ऐसा कुछ व्यक्ति आएंगे ए आपस में बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर कुछ बोर्ड जैसा बनाया गया है ऊपर पंडाल जैसा भी लगाया गया ऊपर सोलर --

यहां पर दो बड़े-बड़े मकान देखे जा सकते हैं पूरा मकान में खिड़कियां दिखाई दे रही है जैसा कि कुछ खिड़कियों पर ग्रील लगा हुआ है।

यहां पर एक डैम जैसा कुछ बना हुआ है अगल-बगल बहुत भारी-भारी पानी दिखाई दे रहे है नीचे भूमि दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ हरे हरे धांसू के तथा वूरे घास भी उगे हूए हूए हे कुछ पत्थर भी रख दिखाई दे रहे है अगल-बगल कुछ फेकटरी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक भारी सी नदी देखी जा सकती है जिसमें पानी भरा हुआ है आगे कुछ दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के दिखाई दे रहे है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है आगे कुछ मिट्टी का भूमि जैसा लिखवाना हुआ है आगे भी कुछ पत्थर जैसे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ लड़के लड़किया खड़े दिखाई दे रहे है कुछ लड़के के हाथ में एक डामरु जैसा दिखाई दे रहा है उसके हाथ में कुछ आ डा लकड़ी जैसा दिखाई दे रहा है अगल बगल कुछ ब्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे है कुछ लड़के भी खड़े दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक ब्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है जो सफेद वह काले कलर की चेक का टि-शर्ट पहना हुआ है एक बड़ी लम्बी सी पोल आ पूल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बाउंडरी की गयी है।

बाउंडरी का कलर हल्का भूरा दिखाई दे रहा है आ निचे पानी दिखाई दे रहा है पानी में कुछ हरे ग गय गंदे ग ऊपर कुछ दिखाई दे रहे है हरे हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहै है कुछ झरिया दिखाई दे रही है।